छोटा सा स्पेस है वो भी बंद पड़ा हुआ पड़ा एक छोटा सा मैदान है एक खड्डा नजर आ रहा है सामने सामने गीट्टी नजर आ रहे हैं।

छोटी छोटी छोटी कार्स नजर आ रही है सामने से एक घर भी नजर आ रहा है।